एरोप्लेन उतरा हुआ है रेड कलर का एरोप्लेन दिखाई दे रहा है।

यहाँ आगे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ बहुत ही सुंदर-सुंदर--

बिल्डिंग बिल्डिंगे बनी हुई है कुछ कारें भी खड़ी हुई हे साइड साइड पेड़ है।

यह जो घर है यह घर व्हाइट कलर का है आगे ग्राउंड है और बहुत सारे चप्पल पड़े हुए हैं साइड में भी बहुत बड़ा ग्राउंड है।

यहाँ रोड है रोड के अगल-बगल पेड़ लगे हुए हैं और बाहरी दूबा भी उग रही है।